रस्ते के उस पार दुकानें भी हैं। रस्ते के उस पार दाहिने और बाएं तरफ बिल्डिंग हैं।

कमरे के अंदर सफेद रंग का बेंच लगाया गया--

दाहिने तरफ फ्रिज रखे हुए हैं।

जिसके सीलिंग पर बहुत सारा बलून्स लगा हुआ है। जमीन पर टाइल्स लगाया हुआ है। नीला रंग का लाइट भी लगा है --

और हैंगर टंगाया गया है जिस पर बहोत सारा टोपिया रखे गए हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एक टाटा स्काई का वो केबल भी है।

बिल्डिंग ऊपर छत है। दीवारो पर पोस्टर लगाया गया है। बाहीने तरफ का पोस्टर में केस दिखा गया है। दाहिने तरफ का पोस्टर में दो गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का दीवारों का रंग सफेद है बीच का हिस्सा नीला रंग का है।

टेबल के ऊपर एक कैलकुलेटर रखा गया है एक सफेद रंग का प्लेट भी है जिसके ऊपर दो बाती है।

दाहिने तरफ एक लड़का सफेद रंग का टी शर्ट पहन कर खड़ा है।

टीना पे सी_सी_टी_वी लगा रखा है।

दो इंसान सामानों को चक्के के ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं।

रास्ता भी दिखाई दे रहा है सामने हरा रंग का पेड़ पौधा लगाया गया है।

यहाँ तस्वीर में मुझे एक कमरे के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर शेल्फ लगाया गया है शेल्फ के अंदर बुक्स भी रखा गया है।

बाहिनीं तरफ एक अलमारी रखा गया है जिसका अंदर बहुत सारा सामान है।

सारा घर भी दिखाई दे रहा है पीछे तीनों का दो बार लगा रखा है उसे पर बिल्डिंग भी खड़ा है।

सामने की टोकरी पर आलू रखा है आलू के सामने टोकरी पर अदरक रखा गया है।

तस्वीर पर बकेट भी दिखाई दे रहे है तस्वीर पर गाजर भी दिखाई दे रहा है बंडा गोभी भी दिखाई दे रहा है।

कमरे पर एक बैठने का कुर्सी भी रखा हुआ है। कुर्सी का रंग नीला है।

ऊपर एक पंखा लटकाया गया है बाहिनें तरफ के दीवार का ऊपर एक क्लॉक भी रखा गया है।

कार्टून भी दिखाई दे रहा है सफेद रंग का पाइप लोग लगाकर दिखाई दे रहा है।

स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सबके टेबल पर सफेद रंग का कागज रखा है।

भी दिखाई दे रहा है कॉरिडोर भी रखा है उसके ऊपर एक कार्टून रखा गया है।

मशीन के सामने स्कैनर और कैंची भी है।